यहां पर एक लाल शंख--

ये यहां पर बहोत ज्यादा बच्चे खड़े होकर--

साड़ी की एक बहोत बड़ी दुकान लगी हुई है जिसमें बहोत सारी--